ये डांडिया नाइट की तस्वीर है जिसमें काफी फेमस सिंगर आए हुए हैं।

लोग जाते हैं एक दुल्हन दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी देते हैं।

कॉलेज एक ऐसी जगह है जो हम अपने आप को एक सुरक्षित जगह मानते हैं।

ये गाय खटाल है दो यहाँ पे दो गाय आपको दिख रही है गाय से दुध ए दूध से कुछ भी बना सकते है आप।

कॉपी हो या हैंडपर्स हो या बैग हो या जो भी आपको लेना है आप सभी ले सकते हैं बच्चों के लिए हर एक तरह की खिलौने हैं।